सामने उसके पेड़ है एक एंटीना लगा हुआ है पेट्रोल पंप --

डॉक्टर का गले के ऊपर स्टेथीस्कोप है और एक डॉक्टर ने मास्क लगाया हुआ है और दोनों डॉक्टर ने ग्लव्स पहने हुए है।

इस फीड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अ ह छोटे-छोटे घास हैं और मिट्ठी है दो लकड़ियाँ है एक --

सारे जगह जगह पर घर हैं बहोत सारे पेड़-पौधे हैं आसमान भी एकदम साफ --

पीछे बड़ा सा चट्टान है अ यहाँ पर अंदर आने के लिए एंट्री भी है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कप्स हैं कप्स अ में रंग-बिरंगे कप है।

कुछ सफेद कलर के हैं और कुछ पर दिल बनाया हुआ है कुछ पर फूल पत्ती बनाए हुयें है कुछ पर कुछ मैसेज लिखा हुआ है।